एक यहाँ तालाब है तालाब में एक ठो हम लोग सुजवारी भासा में बोलते है गालकछु --

यहाँ एक ठो कपड़ा का दुकान है इसमें शेरवानी है।

और दू दुकान में सब सामान सजा हुआ है।

और ये डाइनिंग टेबुल है कुर्सी है छे-सात ठो कुर्शी लगा हुआ है डाइनिंग टेबुल पर।

ऊपर में आसमान है नीला सा सफेद सा।

अ औ पानी में त तैरने वाला नहीं है खराब है।

यहाँ बड़ा सा नदी है। नदी में कमल फूल है जिसे हम लोग सुजापूरी में हिला फूल कहते हैं।